ऑरेंज साड़ी पहनी हुई है जो रेड कलर की।

अगल बगल और भी लोग हैं जो साथ साथ चल रहे हैं पेड़ पौ--

अंदर पूरा स्कूल का ऊपर से कपड़ा से छाया हुआ है गेट लगाया हुआ है गेट ग्रीन कलर का है ऊपर में एक पोस्टर लगाया हुआ है।

बगल में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं बहुत सारी तारे लगाई हुई है ब्लैक कलर का इधर उधर।

सामने बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है।

जो खराब हो चुकी है उसका गेट निकाला गया है।

यहां पर बिल्डिंग का दृश्य दिख रहा है।

रंग बिरंगी लाइटो से रंग बिरंगे फूलों से फूल का कलर है पीला लाल हरिअर और ब्लू कलर का है।

जो ग्रीन कलर का कोट पहनी हुई है।

बगल में भी बनती हुई बिल्डिंग का दृश्य दी --

ढलाईया का काम चल रहा है।

कुछ टॉयलेट रखा हुआ है लाइट जल रहा है।

साड़ी दुकान के दृश्य दिख रही है बहुत सारी रैक बनाए हुए हैं।

शर्ट रखा हुआ है बगल में एक कुर्सी रखा हुआ है।

इधर हैंगर में कुछ जैकेट टांगे हुए हैं रंग बिरंगे का जैकेट ब्लू कलर का है व्हाइट कलर का --

अगल बगल सोफा लगाया हुआ है।

नीचे मैट बिछाया हुआ है मैट ग्रीन कलर का है।

कुछ कचरे फेंके हुए हैं नीचे में।